हर एक इंसान डायमंड शोरूम पर अपने जरूरी सामान खरीद सकता--

शादी पार्टी या कुछ आयोजन करवा सकते हैं।

यह एक पुतला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि--

डॉक्टरो के सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे मजीद क़ुदसी पुलिस रेडियो लिखाई दे रहा है लगता है ये मजीद --